अन्दर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है बाहर दो व्यक्ति खड़े हैं।

यहां बहोत घने पेड़ है यहां जंगल जैसा प्रतित होता है।

यहां पर हरे भरे घने लंबे बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और सुनहरे रंग की लाइटे लगी हुई हैं।

सभी साइकिलें नई और सुन्दर साफ सुथरी हैं।

लकड़ी पर बहुत अच्छी तरह के डिजाइन बना हुआ है फूल पत्तियों के।

यह एक भवन है यहां पर जीवान हार्ट केयर लिखा हुआ है।

ये पानी बहुत ही माटिला है यहां आस पास की मिट्टी बहुत ही गिली है।

और हरी भरी घास उगी हुई है यहां चारों तरफ हरियाली नजर आ रहे है।

इसमें बहोत सारे गमले रखे हुए हैं जिन पर पौधे लगाए जाते--

एक व्यक्ति है जो मास्क लगाया हुआ है।

यहां रोड है रोड के किनारे एक नीले रंग के छपरैल में कुछ दुकान बना हुआ है।

हम इस दृश्य में देख पा रहे हैं कि यहां पर एक इमारत है बहुत सारे वाहने हैं।

यहां बहोत सारी दवाइयां रखी हुई है रैक पर सजा के दवाइयां रखी हुई है।

यह दृश्य सुबह का है यहां एक मैदान है।

ये पेट्रोल पंप पर एच_पी लिखा हुआ है।

पीछे एक बैनर लगा हुआ है।

यहां पर इमारत सफेद रंग का है सामने में बहुत सुंदर सा गार्डन है जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

पर छडे निकली हुई है जिसमें सीमेंट के घोल को लगाया जा रहा है।

यहां पर एक बोर्ड टंगा हुआ है जो नीले रंग का है और उस पर कुछ सफेद अक्षरों से लिखा हुआ है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं कि एक बार का दृश्य है।

पीछे में बहुत सारी भवनें हैं और यहां पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं।